और अंदर हमें दो व्यक्ति देख सकते है।

और यहाँ पर हम देख सकते है की तीन कुर्सी रखी हुई नजर आ रही है।

एक गुलाब का फूल नजर आ रहा है इन सभी गेंदों के फूल के बीच में।

मोतीचूर के लड्डू है ऐसी चींज़े नजर आ रही है।